यहाँ मे सबसे पहले एग्जिट ट्रेन है और ट्रेन के सामने में इंडियन रेलवेज लिख के हैं।

इसमें बहुत सारा आदमी बड़ा छोटा बहुत सारा दिखाई दे रहा है।

यहाँ में पाँच आदमी हैं।

और उसका सामने में एक ठो फ्लोर में एक ठो व्हाइट बैग गिरा है।

यहां में सबसे पहिले दो ठो लड़का दिखाई दे रहा है।

जो कि मास्क पहन के है और उसका सामने में एक ठो ब्लू कलर का एक ठो बकेट है।

पास पास में बहुत सारा घास लोग है घास खा रहे है।

और उसमें सामने एक ठो काउंटर में एक ठो अंकल भी बैठे है।

और उसमें एक ठो लड़का जो बाल काट रहा हैं उसका सामने में एक ठो माजा वाला बोतल है।

उसका ऊपर में रेड कलर का एक ठो फ्लैग भी है।

यहां में बीच में सबसे पहले एक ठो बड़ा सा पानी है।

और ये ट्रक दोनों के बीच में एक ठो कुत्ता दिखाई दे रहा हैं।

वही कुत्ता का बीच में कुत्ता का पीछे मैं एक ठो टेंपो भी जा रहा है और दो टो स्कूटी भी जा रहे हैं।

का सामने में एक ठो आदमी दो ठो आदमी है।

और इसमें बाहर में गेट भी है।

और बिस्तर के ऊपर में तीन ठो कपड़ा जैसा ठो है और एक ठो बास्केट वाला भी एक ठो दिखाई दे रहा है।

हमें बहुत सारा आदमी दिखाई दे रहा है।

और वो जो फोन भी पकड़ रहा है वो कैमरा शूट कर रहा--

यहाँ में सबसे पहले कार दिखाई दे रहा है दो ठो कार मारुति और क्रेटा ।

और उसका सामना में ए_सी भी लगा के है और उसमें एक ठो फैन भी दिखाई दे रहा है।

ये दुकान में बहुत सारा चप्पल दिखाई दे रहा है।

और उसमें बहुत सारा रास्ता लोग भी दिखाई दे रहा है।

और उसका रास्ता के किनारे में सोलर पोज भी दिखाई दे रहा है।

राइट में एक फायर डिस्ट्रीब्यूशन है और ऊपर में थोड़ा फूल वाला भी सजा के है।

और उसमें बहुत सारा कार्टूंस लोग है।

उसमें पीछे में एक ठो लड़का दिखाई दे रहा है।

उसमें लड़का का एक ठो चेहरा भी दिखाई दे रहा है।

और एक ठो दरवाजा भी दिखाई दे रहा है और दरवाजा के सामने में टी_वी भी कनेक्ट कर के है।